ये यहाँ पे ट्रक लगे हुए है और बंदे सब अपने-अपने काम कर रहे है अं इसके पास एक ठो कुल्हाड़ी है कुदाल है और --

और साइड में दुठो डब्बे भी रखे हुए हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं और डब्बे में है वो भी अच्छे लग रहे हैं देखने --

यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मास्टर का ठिकाने ना है| यहाँ पे एक ठो बच्चे सोले है और एक ठो बच्चे --

देखिए यहां पे एक औरत बैठे हुए हैं कुर्सी पर। वह सैंडल पहने हुए हैं और अम्म्म आंख में चश्मा पहने हुए है। साइड में एक ठो फोटो भी लगे हुए हैं। काफी अच्छे लग रहे हैं। साइड में एक ठो बोर्ड भी है।

यहाँ आप देखिये यहाँ पर ढेर सारा लाइट लगे हुए हैं| यहाँ पे लगते हैं स्टेशन है | स्टेशन पे चाय-वाई का दूकान भी है| यहाँ पे ढेर सारा आदमी बैठे हुए हैं।

और बैग भी ढेर सारा है एक आदमी मोबाइल खोज रहे हैं एक आदमी माक्स लगाए हुए हैं और एक आदमी चश्मे पहने हुए हैं बहुत अच्छा |